स्वस्ता केंदर यानि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो --

गांव भी दिखाई दे रहा है।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

प्लेटफार्म खाली-खाली सा है। यह ट्रैन चलती हुई नजर आ रही है। ये एक एक्सप्रेस ट्रैन है जो कि इस प्लेटफार्म पे आयी हुई थी।

पेड़ की है। पेड़ के नीचे --

एक मंदिर नजर आ रहा है।

थोक की दुकान है। यहाँ पर थोक का सामान मिलता है। यह सभी पुर घर से रिलेटेड सामान यहाँ पर आसानी से मिल जाता है।

यह एक रंगोली है। यह रंगोली बहोत बड़ी है।

बोर्ड डका हुआ दिखाई -दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यह ऑटो नया ऑटो है। यहाँ पर काउंटर बनाये गए हैं। जहाँ पर --

रोड की है। रोड के ऊपर झांकी होती हुई नजर आ रही है। यह झांकी एक ट्रक के ऊपर --

पहाड़ की है। पहाड़ के नीचे हमें हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह पेड़ --

और पहाड़ों से देखा हुआ गया नजारा बहुत अच्छा है।

यह घड्डी सफ़ेद रंग की है। इसके चार टायर हैं।

पर का गेट लोहे से बनाया गया है।

पारक के अंदर दर्शायी गयी है। यहाँ छोटी-छोटी हैज हैं।

इंग्लिश के नाम से है। यहां पर इंग्लिश सिखाई जाती है।